ऊपर वॉल पर एल_ई_डी बल्बस दिखाई दे रहे हैं यहां पर ड्रेस के नीचे फुट वेयरस भी रखे हुए हैं।

जिस पर लिखा है बगीचा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट ।

ये ईमेज एक बुक्स कि दुकान की है आप देख सकते है।

बुक्स रखी हुई है शेल्फ में कुछ चार्ट्स भी लगे हुए हैं।

वॉल पर क्रीम कलर की पेंटिंग की हुई है बहुत सारा सामान यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है।

दो खिड़कियाँ हैं जो खुली हैं उस खिड़की के पास एक पानी की बोटल दिखाई दे रही है।

शेल्फ के सबसे ऊपर के हिस्से में टॉप का एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर टॉप लिखा है।

ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सी_बी_टी एंड डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है और इसके आजू बा --

हुए हैं एंट्रेंस पर फ्लोर पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

उसके ऊपर एक बैनर है जिस पर लिखा है ऊपर डार्क घर नरी कटी य यागंज --

सभी फूल अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।

साइकिल और बाइक में हवा भरने के मशीन है साइड में एक टीना का रूम बनाया गया --

इधर साइड में एक शेल्फ बन गया है इस टेबल कर पकड़ --

बैनर लगा हुआ है जिस पर कजारिया लिखा हुआ है नीचे फ्लोर पर कार्पेट डाला हुआ है।

एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई है और एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बाजू में एक दुकान है जिस पर ब्लू कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

पीके बाजू एक बिल्डिंग है जिसके नीचे ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर भी दो छोटी खिड़कियां दिख रही है।

इसके एंट्रेंस के सामने कुछ आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है।

यहां पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं बहोत सारे आदमी लोग एक कट्टा हुए हैं।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है उसके ऊपर बैनर है जिस पर फॉर्च्यून तेल का एडवर्टाइज किया गया है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज एक दरगाह है बाहर एक गेट है जिस पर पर्पल कलर किया गया है।

ये एक तरकारी मार्केट है जहां पर एक थैले में बहोत सारी तरकारी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

रॉड को बंधा जा रहा है बहुत सारी ईंटें दिखाई दे रही है।

जिस पर सलून लिखा हुआ है यहां बाहर भी एक बैनर है जिस पर फ्लोरल लिखा हुआ है गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स हैं।